नीचे और ऊपर से भी पानी गिर रहा है और नीचे लाइट्स जल रही है।

इसमें एक येलो रंग येलो रंग की साड़ी पहनी हुई महिलायें बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। लड़के चट्टानों पे बैठे हुयें हैं।

इस चित्र में एक पुरुष खड़ा हुआ है ये मोबाइल लेके सेल्फी ले रहा है नी इसके नीचे --

गेट दिखाई दे रहा है पुरुष अपने दोनों हाथों को ऊपर लिए हुए है।

सामने एक पुरुष भी खड़ा हुआ है उसके पीछे भी एक पुरुष है जो ए_टी_एम से पैसे चैक कर रहा है।